बना हुआ ईमारत से बना हुआ दिखाई दे रहा है जो की सीढ़िया बनी हुई हैं और एक पुराना ज़र्ज़र टाइप का किला है।

अ छात्र-छात्रा छात्रों को ट्रेनिंग देते नजर आ रहे है।